ये जो तस्वीर है तस्वीर में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड नजर आ रहा है उसमें जो है दूर पे--

दो बिल्डिंग नजर आ रही जिसमें बाउंड्री वाल है एक बिल्डिंग तो बहोत ही खूबसूरत नजर आ रहा है दिन जो है ये दिन का समय है।

ये जो तस्वीर है तस्वीर में कुछ टाइल्स का डिजाइन जो दर्शाया गया है।

कुछ बंदे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे इसलिए और भी नजरा बहुत ही खूबसूरत सा--

और बहुत सारे लोग बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में--

पेड़ भी नज़र आ रहे है ऊँचे-ऊँचे पेड़ भी नज़र आ रहे हैं दिन का समय है नीला आसमान भी नज़र आ रहा है। ये कहीं पे --

तस्वीर है इसमें दूर-दूर में पहाड़ नजर आ रहे हैं हरे बड़े।

इसीलिए यह तजदीर जो उजाला नजर आ रहा है कोई बंदा आसपास या दूर-दूर कोई बंदा नजर नहीं आ रहा इस तस्वीर में।

लग रहा है कोई जंगल के पास के ये तस्वीर है नजर आ रहे--

ये जो तस्वीर है तस्वीर मे जो बिल्डिंग का ऊपर जो साइन बोर्ड लगा हुआ है बहोत ही खूबसूरत सा बिल्डिंग है उसमें साइन बोर्ड लगा हुआ है एस टी --

और इसमें जो लाइट शो चल रहा है वॉल जो है क्रीम कलर के हैं और दरवाज़े ब्राउ अ ब्राउन कलर के हैं और इसमें जो--

जाना चाहिए बहोत ही सुंदर तरीके से इन्होंनें डिजाइन किया है ये बहोत ही बढ़िया--

कमरे में जो है कोई बंदे नजर नहीं आ रहे हैं इसमें जो है।

बहोत ही बढ़िया खूबसूरत सा लाइटिंग सुंदर सा हो रहा है जो तस्वीर है ये देखने लायक तस--